ये पिक्चर लिया गया है एक उ शादी का मंडप का। जहाँ लड़का-लड़की स्टेज पर जयमाला होते हुए दिखाया गया है और ऊपर से फुलझड़ी जैसा --

ये पिक्चर लिया गया है एक घर का।

ये पिक्चर एक लिया गया है पार्लर का ब्यूटी पार्लर का जहां दोगो कुर्सी लाल रंग की लगी हुई हैं |